सामने काफी घनी जंगल दिख रही है पहाड़ है ऊपर बादल है।

उनमें काँंच का दरवाजा है बाहर एक गाड़ी खड़ी है।

दो बच्चियाँं हैं जो नीचे झुक के --

काफी संख्या में यहाँं लड़- पर बहुत सारे भीड़ लगी हुई है।

उम यहाँ पे कई सारे कपड़े रंग कलरफुल कपड़े उम्म--

खंभे है पॉल है तारे लगी हुई है साइड में करखाना है ऊपर टीना लगा हुआ है।

एक बगान है बगान में एक एक एप्पल का गाछ जिसमें कही सारे एप्पल उगे हुए--

नीचे बहुत सारे घास-फूस हैं सूखे घास हैं ।

बिल्डिंग है बिल्डिंग के नीचे काफी सारे आदमी लोग बैठे हैं।

सामने एक आदमी बैठा हुआ है चश्मा लगाए जो अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

कुछ लोग अंदर खड़े हैं एक आदमी बाहर खड़ा है।

तेज रफ़्तार में झरना बह रही है पहाड़ों पर काफी जंगल घने घास पेड़-पौधे उगे हुए हैं।

एक सड़क है सड़क पे दो लेडिज आ रही है।

हॉल जैसा बना हुआ है नीचे ग्रीन कलर की कार्पेट बिछी हुई है सामने येलो कलर की सोफा रखी गई है एक ब्लैक कलर की सोफा है।

इम्म कुछ पोस्टर टंगे हुए हैं सामने की तरफ एक दीवाल टी_वी रखी गई ऊपर एक झूमर लगा हुआ है साइड में कर्टन लगे हुए हैं ।

बगल में एक योनो एसबीआई का मशीन रखा है।

बोर्ड लगी हुई है बड़ी बड़ी बोर्ड लगी हुई है।